वह एक हाथी की जैसी मूर्ति है लाइट वगैरह भी लगी है।

ये कोई कमरा जैसा लग रहा है।

काम करते दिख रहे हो।

इस पिक्चर में--

और गाड़ी भी खड़ी है।

एक बड़ा सा हाल सा--